एक मकान है मकान में एक बोर्ड लगा है जिसमे श्री राधे प्रॉपर्टी सेल्ल कंपनी लिखा है।

चट्टानें हैं चट्टानें के ऊपर पेड़ हैं।

एक रेलवे सटटशन है रेलवे सटटशन में सिडिया --

मेहल के ऊपर अम्बिकापुर लिखा है।

खेत में पहाड़ है और आजू-बाजु बहुत सारे पेड़ है।